यह एक जगह है।

ओर बिल्डिंग का कलर सफ़ेद है और बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।